एजेंट पड़िया मेला लागल है मिकी माउस वाला झुलुआ है सब औरत हइ आदमी है।

बहुत बच्चा है गाड़ी बला झुलुआ है तारा माचीस है गाछ है ऑउडात है कुड़सी है।

एगो स्कुल हेय एगो हीया मैडम हेय बहुत गो बच्चा हेय बेंच हेय लड़का हेय लड़की हेय उजला लाल से --

श्री हिंगलाज बुक डिपो लिखा हुआ है फोटोकॉपी बुक स्टेशनरीज लिखा हुआ है।

वैष्णवी हॉस्पिटल लिखाल है डॉक्टर के नाम विकास कुमार लिखाल है सिकंदरा रोड लिखाल है बहुत ही महला हॉस्पिटल है ।

एगो क्लासरूम है ऑकड़ा में एगो टीचर पढ़ा रहले है।